यह एक जिम है यहां दो लोग--

रोड के पास एक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसके--

पेड़ पौधे से भरा जगह है।

बहुत सारी साइकिल खड़ी है।

जिसमें ऊपर ग्रीन कलर का पट्टी किया हुआ है।

इसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयां दिखाई दे रही हैं।

छोटी छोटी दुकान दिखाई दे रही है।

पिलर पे रैपर से सजाया गया--

इसमें कुछ सामान दिखाई दे रहा है जिसमें सेनेटाइजर मास्क --

पीछे में रेड पर्दा लगा है।